बहुत सारे लोगो ने ढोल लगे ढोल बजा रहे हैं और सब ने आसमानी कलर का कुरता पैजामा पेहन रखा है |.

साइड में एक कार का टायर पड़ा हुआ है और पीछे की और वाइट कलर का शेड दिखाई दे रहा है |.